साथ ही हम यहाँ पर कुछ लोगों को भी देख पा रहे है यहाँ पर हमें कुछ पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे है दिखने में ये जिम बहुत ही अच्छा लग रहा है।

अं यहाँ पर बड़े-बड़े ऐनक भी लगे हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ पर हम बहुत सारी मशीने देख पा रहे है। देखने में ये जगह अच्छा लग रहा है।

हमें एक जिम देखने को मिल रहा है। ईस जिम मैं हमें बहोत सारी अलग अलग तरह की मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही हम यहाँ पर बहोत सारे डम्बल्स --

कृष्णमैया काफी अच्छा लग रहा है बड़े ही सुंदर तरीके से मूर्तियों को बनाया गया है।

इस तस्वीर मे हमें एक मस्जिद दिखाई दे रही है इसे देखने मे काफी बड़ा और सुंदर लग रहा है बड़े ही सुंदर तरीकेसे इसे डिज़ाइन किया गया है।

हमें यहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है आसपास हम यहां पर पेड़ पौधे भी देख पा रहे है।

इस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर थोडा सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे कोचिंग सेंटर दिखाई दे रहा है। जिसका पोस्टर भी हमे ऊपर लिखा देखने को मिल रहा है उसमे नंबर भी लिखा हुआ है।